फूल है कमल का फूल खिला हुआ है पत्ते हरे-भरे दिख रहें है और पैर तैर रहे है पानी में पत्ते--

ये घर है और मुर्गा भी--

एक हम पुल है पुल के ऊपर हम सीढ़ी जैसे बना हुआ हैं।